कार खड़ी है जो कि सफेद कलर की है एक आदमी जा रहा है कुछ पौधे है जो कि हरा भरा है आकास का रंग नीला है एक रास्ते में कार जा रही है जो कि सफेद कलर का है।

एक बड़ा सा मकान है जो की बहुत से कांचे लग रहे है एक छोटा सा मकान है जिसके ईंटे दिख रहे है।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक बड़े से टीने का लगा है लोहे है कुछ मंडिया लगी है सब्जिया कि दुकाने है बहुत सी लाइटे लगी है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान के बगल में कुछ अं परदे हैं टंटे लगे हैं।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक बड़ा सा मकान है जिसके दीवाल में डिज़ाइन दार बने है एक एक --

पीछे बहुत से पेड़ है जो की हरे भरे है ईंटे की बहुत सी दीवाल बनी है बिजली के खम्बे है।

एक बड़ा सा जंगल है जंगल में बहुत से पड़े पौधे घासे है जो की हरा भरा है बहुत से प्रकार पड़े पोधे है बिच में से पानी आ रहा है धुआ है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान में एक विमान खड़ा है जोंकी सफेद कलर का है उसके पास एक टेबल है उसमें कुछ लिख है।

जो की हरा भरा है पानी गिर रा है नीचे आकास का रंग सफ़ेद है छोटे छोटे झाड़ियाँ है पहाड़ो में बोहोत से पेड़ पोधे घासे है पत्थरे है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान के बिच में लोहे की पाइपे लगी है अगल बगल बिच में तोप रखा है जो की नीले कलर का है।

अगल बगल बहुत सै कारे खड़ी है गाड़िया खड़ी है जो की सफ़ेद कलर की है बहुत पेड़ पौधे है हरे भरे है दो टावर है जिनमे तारे लगी --